इस फोटो में मुझे एक लंबी टेबिल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बड़ी सी खिड़की दिखाई दे रही--

इस फोटो में मुझे लाइट की सजावट दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे बहुत बड़ी पानी की टंकी दिखाई दे रही है।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

दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे स्टेज दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाइ दे रहा है।

इस फोटो में मुझे पंखा दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे सोफा टेबल दिखाई दे रहे हैं।